एक औरत आदमी अगल बगल खड़े हुए हैं।

शेड लगा हुआ है दोपहर का दृश्य है।

रंग बिरंगे फूल पौधों में लगे हुए हैं।

आइस क्रीम पार्लर की तस्वीर है।

कोको कोला लिखा हुआ है।

ऑटो वाला पेट्रोल भरा रहा है डिश छतरी दिख रही है।

वो आदमी खड़े दिख रहे है।

टायर का रंग काला है।

एक स्टूल पड़ा हुआ है।

नीले रंग कि लाइटें जगमगा रही हैं।

पिलर पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है।

जमीन पर सफेद टाइल्स लगे हुए हैं।

ये एक पुराने पिक्चर हॉल की तस्वीर है।

लाइटें टिमटिमा रही हैं।

दीवारों का रंग लाल है।

कुछ लोग नौके पर बैठे हुए हैं।

एक नौके के पास लाल झंडा लगा हुआ है।

झंडे नजर आ रहे हैं।

किनारे की तरफ शीशे लगे हुए है।

खाने की बहुत सी चीजें रखी हुई--

पौधों के बीच से रास्ता आया हुआ है।

आदमी सफेद शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का है।